इस तस्वीर मैं देख पा रहा हूं कि ये सभ्य समारोह का--

और इसमें जो कि एक पुतला भी लगाया गया है जिसमें साड़ी स साड़ी पहनाई हुई है गया है और बच्चा के लिए --

बाइक सर्विस सेंटर है जिसके अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है स्कूटी के लिए तैयार करवा रहा है और एक बाहर की तरफ में कुर्सी रखी हुई है।

इस तस्वीर में ये रात का नजारा दिया गया है ये इसमें एयरटेल फोर जी का ऊपर में बोर्ड लगा हुआ नीचे वोडाफोन का लगा हुआ है।

जैसे पानसौ लीटर की पानी की टंकी हो गई--

और सीढ़ियां लगी हुई हैं गेट के बाहर जिसमें सीढ़ियों के साइड किनारो पर छोटे छोटे गमले रखे गए हैं जिनमें छोटे छोटे पेड़ भी हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं ये एक रात का दृश्य लिया गया है जिसमें ये जो केसर का लोगो लगाया गया है ये बहुत ही शानदार चमक दे रहा है।

रेलवे प्लेटफार्म है। वह देख पा रहा हूं जिसमें--

और ट्रेन की पटरियां जो कि दो तीन लाइने दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ में मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर मे मैं देख पा रहा हूं की आगे बॉक्स ऑफिस लगा हुआ है बाहर की तरफ मे चार बॉय बाइक खड़ी हुई है और अकादमी सीनियर ऑफ स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें एक भाई साहब हैं दूसरी कार के पास में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो व्यक्ति दुकान के मालिक हैं वो बहार निकलते हुए नजर आ रहे हैं।

के मुझे नजर आ रहा है कि गमले पड़े हुए हैं और बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं।

एक दीवार घड़ी भी शायद लगी हुई नजर आ रही है गोल आकृति में--

भरा हुआ लग रहा है और ये स्टेयर के नीचे भी अह काले कलर भारी भारी पत्थर जो कि अलग ही डिजाइन में लग रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक पुरानी हवेली टाइप नजर आ रहा है जिसमें दो मंजिला इमारत भी लग रही है जिसमें ऊपर की तरफ में --

लोहे की जाली की रेलिंग लगी हुई है और देखें तो यह पुरानी लाल पत्थर ईंटों से बना हुआ मकान है यह बहुत यह --

इस तस्वीर में मुझे एक तीन चार मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसके बाहरी और में तीन--

इस तस्वीर मै देख पा रहा हूं ये एक दो मंजिला इमारत है जो की बीकानेर शहर की कोर्ट लग रही है और इसमें--